यह क्लास भरा हुआ है। बेंच है है। बहुत सारी लड़कियाँ है लड़के हैं मास्क लगाए हुए हैं बेड है।